यह तस्वीर एक ब्रिज कि हैं जहां पे यह ब्रिज पूरा खाली है।

यह एक फेमस स्टैचू है जो की एक घोड़े की है घोड़े के ऊपर राणा प्रताप जी बैठे हुए हैं।